तस्वीर है और ये ये घर बहोत ही ज्यादा बड़ा होने के कारण ये तस्वीर मे अच्छी तरह से आ नहीं पाई है ऊपर का हिस्सा कट गया है। इसके चारो तरफ जो दीवार है उसका शेडो नीचे की तरफ लग रहा है।

उसमे दो कलर दिखाई दे रही है। एक ब्लैक और एक थोडा-सा डार्क ग्रीन कलर डार्क ग्रीन कलर है और उपर का जो आसमान है वो नीला लग रहा है। और यहाँ पे इंसान नजर नहीं आ रही है। बहुत ही ज्यादा सुनसान लग़ रही है । धूप पड़ने कि वजह से इनमे रोशनी भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से आई है।

अन्दर पेंटिंग है। यहाँ पे बीच मे एक चक्र का चित्र बनाया गया है। और ये दोनों साइड से झंडे भी लगाये गए हैं। और यहाँ एक छोटी-सी ग्रील लगाई गयी है। और ग्रील का दोनों साइड से गेट खुला हुआ है।

इसपे ग्रीन कलर की ग्रीनरी बनाई गई है। यह पे छोटे-छोटे फूल खिले हुए हैं जो की रेड कलर के हैं। और पीछे और भी झाड़ियाँ नजर आ रही है। और दूर-दूर मे थोडा-सा पहाड़ नजर आ रहा है। यहाँ जो आसमान का कलर है वो वाइट और स्काई ब्लू कलर की हो गयी है लेकिन यहाँ पे थोड़ी-सी सन्नाटा छाई हुई है।

यहाँ पे जो सूरज की रोशनी है वो बहुत ही ज्यादा लाइट कर रही है और वो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है यह शाम के समय होने के कारण यह जो पेटिग का कलर्स भी यूस किया है वो भी थोड़ी सी ब्राइट कलर यूस --

नीचे का जो जगह है बनाया गया है वो पूरा येल्लो कलर की बनाई गयी है और उपर के जो फूल है वो रेड - रेड कलर के बनाई गई है। वो बहुत ही ज्यादा सुन्दर सी यूज़ किया गया है तो ये देखने मे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है।

सुन्दर एक चित्र बनाई गई है जिसके बीच में एक पानी का जगह बनाया गया है। वो पानी बहोत ही ज्यादा सुन्दर लग रहा है देखने में। और पानी का जो कलर है वो सारे फूलों के कलर के जेसे लग रहे हैं। और--

उसके जो नीचे का हिस्सा हैं वहाँ पे बहोत सारी चीजे रखी हुई हैं। और वहाँ पे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है। और वहाँ पे एक सिलेंडर भी रखी हुई है। और सामने का जगह है वो थोड़ी-सी टूटी-फूटी और खराब हो गई है और वहा पे कोई इंसान नजर नहीं आ रहे हैं। थोड़ी-सी बस्ते भी रखी हुई हैं। और बहार थोड़ी-सी टूटी चेयर्स रखी हुई हैं।

यहां पे मिट्टी एक साथ नहीं जा रही है वो देखने मे बहोत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ऊपर का जो हिस्सा है वो बहोत ही ज्यादा खूबसूरती से बनाया गया है। और यहां पे धुप पड़ने के कारण बहोत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। यहां पे बहुदो मिट्टी है वो थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हैं।